ऊपर वाला में चूड़ी है.

हरा कृपाल हे दिवाल हे.

जमीन है जमीन पर घास हरा हरा ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है.

तर्जुई है तोलने वाला.

और सामने बड़ा सा मकान है और बस के उपर सीटा से छा छाया हुआ है.

बहुत सारे आदमी है और चार ठे बाइक है.

एक नाव उल्टा हुआ है ब पिछे--

बहुत पांच छे छे आदमिन है.

बस बूढ़े साल ओढ़े है और दो लोग पीछे ठड़े है.

और पाइप इसमें .]

कंटेनर जैसा है जो की सीटा का ही पूरा बनाया गया है दीवाल विवाल.

और पानी का जर्ना हे जो कि पानी आ रहा हे ऊपर से दोनों बगल अगल बगल पत्थल का चटान हे.

मकान का कलम ठरा रहा है.

और उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

और एक ठड़ा है और दो लोग पेंट कर रहे हैं दरवाजा है .]

आदमी लोग हैं लेडिस लोग हैं.

जंगल है जोकि हरा भरा ब-लम्बे में बहुत बहुत सारा हरा पेड़ है.

एक पहाड़ बड़ा है एक पहाड़ छोटा है.

कपड़ा सीने वाला सिलाई मशीन है जो की छह आठ दस थे दिखाई दे रहे हैं और छोटे-छोटे डिब्बा में समान है.

बहुत से सारे सामान है।

और हरा हरा घास हे जोकि पहाड़ दिख रहा हे.

जो कि श्रृंगार स्टोर है कोमल श्रृंगार स्टोर ।

ओर अपने अपने हरे को व्हाइट चटाई असमानी कलर है.

और ब्लू कलर ग्रीन कलर है दीवार है जो कि हॉल के अंदर योग करते हुए इन लोग दिख रहे है.

वाइट कलर से पेंट किया हुआ मकान है और दरवाजा है।

सेनुल हे ऊपर पोस्टर लगा हुआ हे.